यह एक चिड़ियाघर है। यहाँ पे बहोत सारे लोग --

मिलते हैं इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग किताब-कॉपी खरीदने के लिए जाते हैं स्टूडेंट्स सब ।

बिस्तर बिछाये गये हैं बिस्तर भी बहुत ज्यादा साफ-सुथरे देखने में लग रहा है।